यहां पर हरी घास भी दिखाई दे रही है यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई--

यहां पर एक सतरिन लगी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है यहां पर पैदल चलने के लिए रस्ता भी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर हरी घास भी दिखाई--

यहां पर बहुत सारे डब्बे भी लगे हुए दिखाई दे रहे--

खिड़कियों में शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर पीपे भी रखे हुए दिखाई दे रहे--